यहां देख सकते है एक प पहाड़ी है जिससे पानी भी निकल रहा है।

और आप देख सकते हैं यहां पे हरा भरा पेड़ है।

आप देख सकते हैं क्या मौसम--

एक ल लड़का है जो में है और एक लड़का पोछ रहा अपने बालों को।

फूलों को अच्छे से तैयार करा गया है पीले और लाल कलर के फूल है।

यहां पे शादी हो रही हैं।

आप देख सकते हैं नीचे गीला हो रखा है स्टैं--

आगे से जिस पे कोई टिक रखा है कपड़ा सा।

यहां पे हरे कलर के गुब्बारे और गोल सी शेप में येलो कलर के गुब्बारे हैं पीले कलर के--

मछली ये मछली चार दस नौ आठ मछलि है।

और ये प्लेट है ये है चांदी चांदी की प्लेट ।

एक लड़का अपने हाथ को हाथों में पेंट लगा रखा--

लोग पेमेंट करते हैं पैसे देते हैं दुकानदार को ऑनलाइन देते हैं मोबाइल के द्वारा।

और दे सकते हैं लोहे की चीजें हैं और ये दुकान है सफेद कलर की।

ये सफेद कलर का बैनर है।

यह एक बस स्टैंड भारतीय का बस स्टैंड है यहां जो बस यहां से लोग बस पकड़ते हैं।

आई_डी कार्ड लाल कलर के।

पहाड़ी से भी यहां पे नीचे पानी आ रहा--

ये लकड़ा मतलब घर बनाने में भी बहोत से बेखा भी जाता है हैने बहुत मोटे में रकमो में--

अ आ सफेद कलर के जल रहे हैं जो कवर लगा हुआ है गाड़ी पे--

नीचे पत्थर लगे हुए हैं पुराने जमाने वाले।

और यहां पे एक पोस्टर लगा हुआ है प्रचार करने के लिए।

कलर हो रखा है इसमें रंग हो रखा है ब्लै काला और सफेद कलर का रंग हो रखा है यहां पे।

आप देख सक देख सकते हैं आगे गाड़ी है।

देखिए जिम मारने के लिए बहोत सारे डोले रखा गया है।

हरे कलर की मैगी रखी है पीले कलर की मैगी रखी है।

और यहां पर बहोत छोटे-छोटे बड़े-बड़े कारे हैं सब तरह के मंदिर भी है साइड में --

यह एक मैरिज होम है।

और आप देखिए नीचे टाइल बिछ रही हैं और हैं।

बहोत सारे कपड़े रखे हैं रंग बिरंगे।

दो तीन क्यू_आर कोड रखे हैं और ए ड्रेस बहोत सुंदर है।

और आप देख सकते हैं यहां पे ड्रिंक रखी हुई है म --

और ये देखिए ऐ_सी लगी हुई है।

हम देख सकते हैं रंग बिरंगी लाइट जली गई है जैसे लाल नीली सफेद।

ऐ एक नीली टी-शर्ट में है और एक हरियर सफेद और काली टी-शर्ट में है।

यह बगीचा कहते हैं इसे और सफेद कलर के यहां पर वो लगे हुए हैं।

यह एक बड़ी सी बिल्डिंग है।

यहां पे स्वीमिंग पूल चल रहा हैं यहां लोग तैरते हैं।

आगे इसका गेट खुला हुआ है।

इसके टायर है सफेद कलर इसकी रिम है।

दो बल्ब जल रहे है गाड़ी का वहां पे आप दीवार पे देख सकते हैं स्टीकर चिपका हुआ है।

और कलर भी ऐसा है बिल्कुल थोड़ा सा बीच से हल्का--